यह एक स्कूल है जिसके बगल में एक रोड है।

सामने एक वाइट कलर का घर भी है जिसमें टीन का छत लगा हुआ है।

बाहर में कई बाइक लगे हुए हैं।

कई सारे लोग झाड़ू लगा रहे हैं।

जिसके हाथ में एक किताब है।

यह एक गैरेज है जहां पे दो कार खड़े हैं।

यह यह एक क्लासरूम है जो वाइट कलर का--

ऊपर व्हाइट कलर का सीलिंग लगा है।

यह एक जिम है जहां पे एक व्यक्ति खड़ा है।

अगल बगल कई सारे बड़े बड़े पेड़ है।

इस दुकान में दो चेयर रखे हुए--

बड़े बड़े मूर्तियां रखी हुई है।

माले पहनाए गए हैं और भी कई चीजे हैं।

सभी बिल्डिंगों में फूल के पौधे रखें हुये हैं।

अगल बगल बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे है।

एक का कलर ब्लैक और दूसरे का व्हाइट --